कुछ कवर करके अलमीरा में डाले गए हुए हैं सामने एक डेस्क नजर आ रही है जिसका कलर सफेद है।

वाइट कलर का है ये और आस पास पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

टेबल जो है वो ब्राउन कलर की है चेयर्स नजर आ रही हैं जो कि आठ से दस ब्लैक कलर की चेयर्स लगी हुई हैं।

मिठाइयां भी नजर आ रही है परले जी बिस्किट नजर आ रहे हैं समोसे नजर आ रहे--

दूसरी साइड में कार्टून्स नजर आ रहे हैं और वॉल की कलर क्रीम नजर आ रही है।

जैसा कि आप देख सकते है इस पिक्चर में अ ये पिक्चर एक सैलून का नजर आ रहा है जहाँ पे दो चेयर हैं।

और वहां पे कैंडल्स लगाए गए हुए हैं डेकोरेशन की गई हुई है जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति सामने नजर आ रही है।

जैसा कि आप देख सकते हैं यह पिक्चर एक आइसबर्ग आइसक्रीम पार्लर की नजर आ रही है जहां लिखा हुआ है मनीष श्रीवास्तव मोबाइल नंबर दिया हुआ है।

जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में यहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो की लटकाए गए हैं सारे पैक्ड प्रोडक्ट हैं।

आस पास घने पेड़ नजर आ रहे हैं ज पौधे नजर आरे एक नल नजर आ रहा है और एक हाउस जैसा नजर आ रा --

जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में यह पिक्चर एक बाउंड्री है।

जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये पिक्चर दुकान की नजर आ रही है।

जैसा कि आप देख सकते हैं एक पिक्चर नजर आ रही है जहां पे अभिमन्यु राय सिंह राय गमा लिखा हुआ है।

वह एक पुरुष जिन्होंने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है जींस और शूज पहना हुआ है।

बगल में एक महिला नजर आ रही है उनकी चूड़ी और उनकी ब्लाउज नजर आ रही है पर्स नजर आ रहा है।

आज चार फीट के और वहां पे पूजा की जा रही है। बहुत सारी महिलाएं बैठ के पूजा कर रही है अलग अलग।

जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक पिक्चर नजर आ रही है जहां पे पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

घोल जो है सीमेंट की जो घोल है उसे कवर कर रहे हैं दूसरे तरफ भी एक मिस्त्री नजर आ रहे हैं जो कि काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

और तीसरी रैक में हार्ड वाली रस्सी नजर आ रही है।

जैसा कि आप देख सकते इस पिक्चर में ये पिक्चर न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की नजर आ रही है यहां पे आउटिंग किया गया हुआ है।

जैसा कि आप देख सकते हैं यह पिक्चर एक स्कूल के पिक्चर नजर आ रही है जहां पे बहोत सारे बच्चे शा बैठे हुए हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं यह पिक्चर एक वॉटरफॉल की पिक्चर है।

जैसा कि आप देख सकते हैं यह श्री दि जैन अतिशय क्षेत्र बा बेहट बाल लिखा हुआ है इस मकान पे।

जूस की मशीन है नीचे बाल्टी रखी गई हुई हैं कंटेनर रखा हुआ है।

इसमें नजर आ रहे हैं और दो ए_टी_एम मशीन है एक ऑरेंज कलर की एक सफेद रंग की।